चॉकलेटी कलर के झूले लगे हैं क्रीम कलर और चॉकलेटी रंग की सीढ़ी है।

ऑरेंज कलर की साड़िये पहनी है आंटी ने।